इस तस्वीर में आप देख सकते है की एक झूला झूलता हुआ लड़का दिखाई दे रहा है।

बैठने के लिए कुर्सियां और बहुत सारे पेड़ दिखाए दे रहे हैं और यहाँ पे एक व्यक्ति भी दिखाई पड रहा है।

इस तस्वीर में आप देख सकते है की एक पेट्रोल पंप दिखाया गया है जहां कुछ लोग मौजूद है।

मैदान पे घास की कमी नजर आ रही है तथा यहा पे एक नेट भी बनाया गया है और बहोत सारे बिजली के खंबे इस तस्वीर मे देखे जा सकते है।